अलग अलग कलर और डिजाइन की वाशिंग मशीन रखी हैं।

यहां पर नारायण जी की मूर्तियां हैं।

यहां पर दीवाल पे ब्लैक कलर का पेंट हुआ है।

इसमें चिप्स के पैकेट रखे हैं।

ये एक कपड़ों की शॉप है।

जहां पर ब्लैक और रेड कलर के सोफे लगे हैं।

जहां पर चेयर पर टॉवल रखा हुआ हैं।

एक बड़ा सा ब बोर्ड पड़ा है।

बस का कलर ब्लू और येलो है।

दीवार पर तीन ए_सी टंगे है।

नीचे को एक हा हॉल बना है।